यह एक गुफा टाइप की लग रही है अ जिसमें बहुत से लोग खड़े हैं।

जिसमे की कंप्यूटर सामने रखा हुआ है वहीं पे सामने में माउस भी दिख रहा है एक पेन --

इस पिक्चर में हम एक तालाब को देखते हैं।

दो टेम्पू और खड़ी हुई हैं पीछे साइड एक हमें साइकिल दिख रही है उसके पीछे हमें एक कार दिख रही है एक खम्बे के बोर्ड पर कुछ पोस्टर लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है।

जिसमें की चार येलो रंग की सुंदर मछलियाँ दिखाई दे रही हैं।

वो रेड और व्हाइट कलर की है।

यह एक स्वीमिंग पूल की पिक्चर है जहां खिसकने पर एक आदमी बैठा है बाजू में एक बच्ची बैठी है।

इस पिक्चर में हम एक येलो कलर की खिसकने झूले को देख सकते हैं।

वो अच्छे तरीके से बलून से सजाया गया है जो की ब्लू और अ वाइट कलर के है।

इसके नीचे फ्री वाई-फाई आरो ड्रिंकिंग वॉटर पावर बैकअप बो न्यूज़ पेपर पार्किंग --

और इसमें ऊपर साइड में हमें कुछ रेलिंग्स दिखाई दे रही हैं।

पैकेट पर फेयरी बैंक लिखा हुआ है अर्थात ये फेरी बैंक कंपनी से हे।

यह जो दोकान है इसके बाहर की साइड में कांच के अंदर हमें बहुत-सी साड़ियां दिख रही है।

यहाँ इस सैलून का नाम आपका सैलून है ये हमें इस बोर्ड से पता लगता है। इसी बोर्ड पर एक लड़के की फोटो भी लगी हुई है जो चश्मा लगाए हैं और ऊपर ब्लू कलर की हैट पहने हैं।

और ऊपर साइड में हमे एक सुंदर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

और यहाँ बीच में एक फव्वारा भी चल रहा है जो की काफी सुंदर है और इसकी जो डेकोरेशन है वो लाइटनिंग से अच्छी तरह की गई है।

और उसके बाजु में हम कुछ कागज को देखते हैं।

पीछे साइड की बोर्ड पर हम देख सकते हैं। कोल्ड डेस्क में रौ में बीएबी आरइ डबल एस लिखा हुआ है।

और यहाँ की जो दीवाल है उसपे ब्लैक कलर की है और उस पर अ सर्किल में लिखा हुआ है क्राउनस निचे साइड पे जीवायएम लिखा हुआ है।

यह जो जिम है उसमे जो पाइप लगे हुए है --

ऊपर साइड की जो वॉल है वो येलो कलर की है और उसमे एक लाइट लगी हुई है।

पीछे साइड हमारे लिए एक बिल्डिंग दिख रही है।

यहाँ बिकुल अअ रोड के सामने साइड में एक पोस्टर लगा हुआ है।

और देखने में काफी सुंदर आकर्षक लग रहें हैं।

जिनमे बहोत से लाल कलर के टमाटर है।

यहाँ बाजु में एक बाइक दिख रही है।

इस पिक्चर में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं।